हरा-भरा पेड़ है और पाइप है पीले कलर का।

थोड़े दूर पे यहाँ पर बहौत सारे घर हैं और उसके पीछे --

और यहाँ भीम राव अम्बेडकर का --

और बाल में एक कंघी लगा हुआ है।

यह एक पिंजड़ा है। इस पिंजड़े में बहुत सारे तोते है।

इसमें अंदर जाने के लिए शीशे का गेट लगाया हुआ है और उसके सामने --

स्टील का रेलिंग लगा हुआ है।